यह बहोत बड़ा मैदान खाली है।

सब सफेद पलेटों में खाना खा रहे हैं औरत और ले जे--

यहां बहुत भीड़ मची हुई है।

इसमें लड्डू बर्फी जलेबी और रसगुल्ले--

सब कपड़े लेने आते हैं।

यहां आशीर्वाद जनरल स्टोर है।

यहां सारा सामान बढ़िया मिलता है और कपड़े भी मिलते है।

बहोत सुंदर पेट्रोल पंप है यहां बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है पेट्रोल डीजल गैस --

यहां बहोत बड़ा सेंटर है बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

साईं बाबा की और माता रानी की तस्वीर है।

और सारे सी शिखर और लाल बिहारी सारा सामान छोटी सी दुकान में--

ये दाल चीनी और कपड़े धोने का बर्तन धोने का नहाने का साबुन सब तरह का मिलता है।